और इसको लाइन बाई लाइन एक दूसरे पे सजाए गए है।

तार के खंभे यहां पतले पतले लगे हुए है।

चारों तरफ बहोत ही ज्यादा पेड़ पौधे हरियालिया आ लगी हुई है।

आ पुन पुन लिखा हुआ है और बहोत सारे गाड़ियां भी यहां खड़े हैं।

जोकि बहुत ही खूबसूरत पत्थरे अ चमक रही हैं।

और इस हॉल में अह जिम करने की मशीन रखी हुई है।

और इस जंगल में बहोत सारे हरियालियां छाए हुए हैं।

और इन खानों में बहोत सारे अ किताब-कॉपीयां और बेचने के लिए अ लाइन बाए लाइन सामाने है रखे हुए हैं।

और इसके बगल में दो तीन बड़े बड़े टेबल लगे हुए हैं।